यहाँ एक पार्क है पार्क में एक एनिमल खड़ा हुआ है जिसकी आँख में से पानी बह रहा है।

यहाँ अच्छा पार्क है पार्क में बाहर गेट लगा है। हरे कलर का बहुत ही सुंदर पेड़ है बहुत ही अच्छा --

लगता है वो लोग फोटो निकलवा --

यहाँ पर काफी सुंदर डांस हो रहा है लगता है इनके स्कूल में कुछ पोग्राम हो रहा है और इनके टीचर्स भी खड़े हुए हैं और फोटोस भी खिंच रही हैं।